दीवारों पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं जो कि रंग बिरंगे पोस्टर हैं।

पहाड़ी पर बहुत सारे हरे कलर के पेड़ भी लगे हुए हैं जो की काफी लंबी लंबे पेड़ है।

पावर ट्रैक को व्हाइट कलर से इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है।

बसेस के सामने एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है जोकि वर्दी में है और जो चश्मा लगाए हुए है।

उनके सामने एक इंसान भी खड़ा हुआ है जो सिर में कपड़ा बांधे हुआ है।

क्योंकि ब्लू और व्हाइट कांबिनेशन के कलर में कलरिंग किया गया है।

कुछ डिपार्टमेंटल लोग भी खड़े हुए हैं एक लेडीज खड़ी है जोकि चॉकलेटी कलर की साड़ी पहनें हुई है।

लाइट येलो कलर की दिख रही है ऊपर सीलिंग को व्हाइट बनाया गया है।

रेड कलर से लिखा गया है उसके नीचे स्टीम प्रेस एंड लाउंड्री लिखा है।

पोस्टर पर वाशिंग मशीन का फोटो भी बना हुआ है।

इस इमेज में जो दिख रहा है उसमें तीन चार लोग कंस्ट्रक्शन वर्क का काम कर रहे हैं।

इसमें शीशा लगा हुआ है जो शीशा लगा है वो ट्रांसपेरेंट है उससे आर पार दिखाई दे रहा है।

इसी के अंदर अलमारी में लाइट भी लगी हुई है जो कि व्हाइट लाइट है।

नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय सरायपुरा कक्षा एक से आठ नगर क्षेत्र ललितपुर--

इस इमेज में एक हेयर सैलून दिखाया गया है जिसमें एक लड़की बैठी हुई है।

जो ब्लैक कलर जीन्स की पेंट पहनी हुई है और बैगनी कलर का टॉप पहनी हुई है।

इसमें नारियल के पेड़ तार के पेड़ और कुछ घास वगैरा लगा हुआ है।